जो एक बहोत बड़ा रेस्टोरेंट है।

यहां पे सामने पर्दा भी लगाया गया है।

यह एक बहुत बड़ा मोबाइल की दुकान है।

बगल में एक पानी बोतल दिखाई दे रहा है।

यह कार्यालय पीला कलर का है।

यहां पे अगल बगल बहोत सारा पेड़ पौधे है।

यहां पे उप्पर कुछ बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक रूम है इस रूम में बहुत अच्छा से टाइल्स लगाया गया है।

यहां पे दीवार पे बहोत सारा बोर्डे लगाई गई है।

इस दुकान बहोत अच्छा बनाया गया है।

एक आदमी साइकिल से जा रहा है।

ऊपर में रखा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है।

दीवार पर चित्र छापा हुआ है।

इस पेट्रोल पंप में बहोत सारा लाइटें लगाई गई है।

मंदिर के सामने एक बड़ा सा लाइट लगाया हुआ है।

इस रूम में बहुत सारा समाने दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत सारा आदमियों लोग का भीड़ है।

उसका बाहर में बहुत सारा पौधे पेड़ लगाए गए हैं।

ऊपर में बोर्ड लगा हुआ है।